वही एक लड़का खा रहा है। वही एक भी खड़ा हुआ है। यहां पे एक स्टैचू भी दिखाई दे रही है। वही साइकिल भी यहां पर खड़ा हुआ है।

काफी अच्छी तरह से इनको मेंटेन किया गया है वही चारों तरफ से बाउंड्री भी नजर आ रही है यहां पे और काफी अच्छे आसमान भी दिख रहे हैं अद्भुत नजारा है ये।

जानवर भी नजर आ रहे हैं वहां पे झरना भी नजर आ रहा है वहीं नीचे फर्नीचर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं गोल्डन कलर में--

वहीं पे सीढ़ी भी रेड कलर से रंगी हुई नजर आ रही है।

यहां पे कई सारे महिला और पुरुष नजर आ रहे हैं वहीं एक गेट भी नजर आ रहा है और बिल्डिंग के ऊपर कई सारे ग्रीनरी भी नजर आ रही है।

कई सारे छोटे छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं जमीन में घास नजर आ रही है बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।